वहां पर फोटो में हरी नजर आ रही है।

एक कपबर्ड भी रखा हुआ है।

गार्डन में अलग-अलग प्रकार के --